ट्यूटर के चार टायर हैं और पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ पोधै दिखाई दे रहे हैं और एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

के अंदर खाना रखा हुआ है खाने में आलू टिक्की सब है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि खाना यहां पर मिलता है बहुत ही सस्ता --

गाड़ियों की दुकान भी दिखाई दे रही है इसके अंदर चाबियां पड़ी हुई हैं पंखे पड़े हुए हैं।

एक कैमरा भी लगा हुआ है और एक--

और ईश्विन चिश्ती भी दिख रहा है मोहित गहलोत दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एक ऊंट का बनाया हुआ है और एक आदमी भी बैठा हुआ है।

ये बहुत ही शानदार आदमी है जिसे आदमी है इधर बहुत सारा काम कर रहे हैं आदमी है इधर --

बाइक लेके स्कूटी लेके खड़ी हुई हैं नजर आ रहे हैं राइट जच रही है और आदमी खड़े हुए हैं बहुत ही बढ़िया नजर आए--

आपको देखना है तो इस एप देख सकते हो दे--

सेट वेट का जेल भी दिख रहा है और डव वाला शैंपू भी दिख रहा है और बहुत सारा सामान चिक शैंपू भी दिख रहा है जो कि गुड्डा-गुड्डी --

ये यहां एक मंदिर दिखाई दे रहा है और एक मंदिर के बाहर कुत्ता भी दिखाई दे रहा है और सामने मंदिर के अंदर --

सामने लाइट के पिलर भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है जोकि बहोत ही शानदार लुक दे रहे हैं इस फोटो के अंदर बहोत ही बढ़िया लुक दे रहे --

एक चेयर भी पड़ी हुई है और एक लाइट भी लगाई हुई हैं सामने छोटे छोटे छोटे छोटे बोर्ड पर देवी दिखाई दे रही है।

मुझे ये एक ये कॉफी शॉप सा बैंक लग रही है मुझे तो ये बैंक है बैंक ऑफ़ बड़ौदा लग रही है।

मुझे यहां कुछ दरवाजे नजर आ रहे हैं दो दरवाजे नजर आ रहे हैं और एक ऊपर बोर्ड लगाया हुआ चप्पल का --